यहाँ पे होलिका जल रहा है।

मुंबई में इसको पोंगल बोलते हैं।

सब दिख रहे हैं बिकने के लिए तैयार है बनाके सब तैयार है कलर वलर किया है लाइन लगी है।

फर्श सब बहुत अच्छा है ऊपर जो लाइटिंग है इतना साफ सुथरा है कि ऊपर की लाइटिंग नीचे दिख रही है ।

उसके नीचे ढेर सारी घासें हैं। कुछ गाड़ के कटइला वाला कांटा लगाया गया है। घेरा गया है।

लाइटिंग अच्छी हुई है टावर के बगल में --

सामने मंदिर है। मंदिर का काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का --